कुछ कुरकुरे का भी पैकेट रखा हुआ है।

यहां पर लाइट लगी हुई है। ऊपर में लाइट के कारण पूरा कमरा गोल्डेन-गोल्डेन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक झांकी निकली हुई है चारों तरफ से बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

में एक बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रहा है।

यह एक होटल दिखाई पड़ता है। यह तीन मंजिला है।

सामने में एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में --

अंदर मे चारपाई रखा हुआ हैं कुछ ईट पत्थर भी रखे हुए हैं एक कुआ भी नजर आ रहा हैं।

फूलों से सजाया गया है। दो गुलाब के फूल भी लगाए गए --

कुछ हरे रंग के पत्तों से भी सजाया गया है नीचे में हरे रंग का कालीन --

यह पर शादियां चल रही हैं। यहां पर कुछ मंडप बने हुए हैं। मंडप फूलों से सजाया गया है। पर्दो से भी सजाया जा रहा है।

नीचे हरे रंग की कालीन भी बिछाई गई--

बहुत सारे लोग नज़र आ रहे है सभी लोग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे है ये एक बहुत बड़ा सा फील्ड है।

अंदर मे भी फादर का चित्र बना हुआ है। --

है। यहाँ आसमान नीला दिखाई दे रहा है।